घांसे बहुत ही सुन्दर यहाँ रोड दिखाई दे रहा है।

और साफ़-सुथरा यहाँ पर रखा गया है।

कैमरा में फोटो शूट कर रहा है जो की अगल-बगल घर है एवं दूसरे घर --

और बहुत ईटे गिरे हुए हैं नीचे --

स एकदम हरियाली-हरियाली बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।

पार्क है जो कि पेड़-पौधे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा एवं सुंदर दिखाई दे रहा है।

और बादल का रंग व्हाइट कलर का दिख रहा है जो की बहुत ही देखने पे बस बहुत ही अच्छा दिख रहा है और बहुत ही सुन्दर दिख रहा है ।